जिसके बाहर लाइटों से सजाया गया है।

और एक जींस टी-शर्ट पेहना हुआ है और हाथ में एक किताब--

इसमें सिटी हॉस्पिटल एक बाहर बोर्ड लगा हुआ हैं कुछ लोग --

जो की एक टेबल पर रखी हुई है।

-- का फोटो है इस फोटो में सामान दिख रहा है।

जो कि बोर्ड को चलाने वाला चप्पु--

और सर वह लिखा हुआ हैआस-पास झंडे भी लगे हुए है।

एक आदमी उन हरी मिर्चो को उठा रहा है।

और उस पेड़ पे एक नशीनी रखी--

और जोकि गार्डन में भरा हुआ है।

और इसके दोनों किनारों पे बहोत से पेड़ लगे हुए है और आसमान--

उस कार का बोनट भी खुला हुआ है और इंजन में आदमी कुछ काम कर रहा है।

इस फोटो में कुछ सीढिया दिख रही है जो के बच्चों के--

इस फोटो में कुछ कुर्सियाँ रखी दिखाई दे रही है।